यहां पर देखिऐ यहां पर देखिऐ आपको एक बड़ा सा ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पर देखिऐ कुडिया खड़ी हुई है और यहाँ ऐ.सी. भी लगी हुई है।

और यहाँ पे देखिये आपको दो पोस्टर भी दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ की जो वोल है वो --

यह पे देखिये आपको साइकिल दिखाई पड़ रही है और साइकिल पे देखिये आपको और दो साइकिल दिखाई पड़ी यहां पे एक मोटरसाइकिल दिखाई पड़ रही है देखिये यहां पे एक शॉप है।

टेबल के ऊपर सामान रखा हुआ है पेपर वगैरा--

इनके हाथ में पेचकस हैं जो वॉल का कलर है वो औरेंज कलर का हैं।

यहां पर देखिए आपको एक फ़िल्टर दिखाई पड़ रहा होगा ब्लू कलर का यहां पर देखिए पोस्टर लगे हैं ब्लू कलर के और यहां पे जो दरवाजा है वह थोड़ा येलो कलर का है यहां पे स्कूटी और बाइक खड़ी है।

यहा पर देखिऐ आपको जो कियारी बनी है यहा पे देखिये कुछ छोटी छोटी घास और कुछ थोड़े बड़े पेड़ लगे हुवे है यहा पर देखिऐ एक पोस्टर लगा है खम्भे पे और देखिये जीने पे एक भैया बेठे हुए है वाईट कलर की शर्ट और ब्लेक कलर की जींस पहेनी हुई है।

यहाँ पे देखिये आपको एक बोर्ड दिखाय पड़ रहा है बहुत बड़ा बोर्ड लगा है यहाँ पे कुछ खाब्भे लगे हुए है और देखिए यहाँ पर तखत सा बिछा हुआ है और यहाँ पे आपको बोहोत कलर जो वाइट कलर दिखाय --

ऐ खम्भा में कुछ लगा हुवा अशोक के पेड़ लगे दिखाय पड़ रहा है पेड लगे हुएबहुत सारी बाइक लगी हुई है।

यहा पे कुछ शॉप खुली हुई हे यहा पे देखि कौई बड़े बड़े पेड़ दिखाय--

यहाँ पे देखिये आपको बड़े बड़े पहाड़ दिखाय पड रहे है देखीये पहाड़ बादलो से टच करते दिखाय दे रहे है देखिये यहाँ पे कुछ छोटी छोटी घास भी है और यहाँ पे देखिये एक घर एसा बना हुआ है कमरा एसा है देखिये दीवार पे कुछ लिखा हुआ है टीवी पड़ी हुई है यहाँ पे कुछ बड़े पेड़ भी है।